animation using script commands पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम jmol script commands प्रयोग करके animations दिखाना सीखेंगे
प्रदर्शन के लिए उदाहरण में हम ethane और hemoglobin के models उपयोग करेंगे
निम्नलिखित keywords के साथ jmol script commands animations के लिए प्रयोग की जाएँगी
move delay slab loop और capture
इस tutorial का अनुसरण करने के लिए आपको high school chemistry का ज्ञान होना चाहिए और jmol window के operations से परिचित होना चाहिए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
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu version 1410
jmol version 14111 और java version 7
यह slide विस्तार में प्रत्येक animation command के function दिखाती है
move command आपको एक दिए गए समय अंतराल में एक model को rotate zoom और translate करने की अनुमति देती है
delay command दिए गए सेकेण्ड्स के लिए एक script को पॉज़ करने यानि रोकने में प्रयोग होती है
slab command panel पर दिखने वाली अणु की percentage को नियंत्रित करने में प्रयोग होती है
loop command वैकल्पिक समय अंतराल के साथ script को शुरू से पुनः आरम्भ करती है
capture command animated gif files के रूप में एनीमेशन को capture करती है
jmol script command पर अधिक जानकारी के लिए jmol interactive script documentation के web पेज पर जाएँ
अब jmol window खोलते हैं और move command प्रयोग करके एक animation दिखाते हैं
मैं ethane को उदाहरण की तरह प्रयोग करके एक सरल move command के साथ शुरू करुँगी
modelkit menu प्रयोग करके ethane का model बनाएं
modelkit icon पर click करें screen पर methane का model दिखता है
hydrogen पर click करें अब screen पर हमारे पास ethane का model है
file menu प्रयोग करके console खोलें
prompt पर निम्न command type करें
command line शब्द move के साथ शुरू होता है
उसके बाद वो numbers आते हैं जो animation parameters के एक set को परिमाणित करते हैं
move command के बारे में अधिक जानकारी move command में नौ parameters हैं
पहले the parameters x y और z axes के चारों तरफ rotations हैं
zoom इन के लिए positive और zoom out के लिए negative
अगले the parameters तीनों axes पर स्थानांतर दिखाते हैं
आठवाँ slab parameter है slab अणु के हिस्से करता है
यह परमाणुओं को एक विशेष गहराई तक हटाता है जिससे कि भीतरी विशेषतायें आसानी से देखी जा सके
parameter 9 सेकेण्ड्स में समय है जो move command को क्रियान्वित करने में लिया जाता है
jmol panel पर वापस जाएँ
enter दबाएं और panel को देखें
हम मौजूदा animation में और commands जोड़कर इसे अधिक दिलचस्प बना सकते हैं
पिछली command प्राप्त करने के लिए board पर अप arrow की दबाएं
semicolon के बाद type करें delay space 2
अगली command निष्पादित करने से पहले यहाँ delay command script को 2 सेकेंड्स के लिए रोकती है
फिर इस delay command के बाद एक अन्य move command type करें
प्रत्येक कीवर्ड command के अंत में एक semicolon लगाना न भूलें enter दबाएं panel को देखें
हम इस animation के दौरान परमाणुओं का रंग भी बदल सकते हैं
पिछली command के लिए दोबारा अप arrow की दबाएं
command को edit करें जैसे यहाँ मैंने console पर दिखाया है
hydrogens और carbons के रंग को बदलने के लिए select keywords प्रयोग करें enter दबाएं
दोबारा panel को देखें
अणु के कुछ भागों को दृश्य और अदृश्य करने के लिए slab command जोड़ें
दोबारा अप arrow की दबाएं और console पर प्रदर्शित की तरह पिछली command को edit करें
select command के बाद type करें slab on
command के अंत में type करें slab off
enter दबाएं और panel को देखें
आप देख सकते हैं कि अणु के भाग अदृश्य होते हैं और दोबारा दृश्यमान होते हैं
आप capture कीवर्ड प्रयोग करके gif file को इस animation की तरह सेव कर सकते हैं
पिछली command प्राप्त करने के लिए अप arrow की दबाएं
capture command type करें और command की शुरुआत में file का name और path उल्लिखित करें
आप gif file को सेव करने के लिए अपने home folder का name type कर सकते हैं
मैं इस file को desktop पर file sneha की तरह सेव कर रही हूँ enter दबाएं
अब animation gif फाइल की तरह मेरे desktop पर सेव किया जायेगा
gif file की location पर जाएँ
सेव की हुई gif file को image व्यूअर सॉफ्टवेयर के साथ खोलें
jmol panel पर वापस जाएँ
उसीप्रकार किसी भी मैक्रोमॉलिक्यूल की pdb file खोलें; उदाहरण के लिए pdb code 2dn1 के साथ oxygenated hemoglobin
file menu प्रयोग करके pdb database से सीधे structure download करें
text box में pdb code type करें 2dn1 ok पर क्लिक करें
panel पर hemoglobin का model दिखता है
console पर निम्नलिखित command type करें
protein के विभिन्न units के रंग को बदलने के लिए हमने select कीवर्ड command प्रयोग किया है
हमने move command भी प्रयोग किया है
यह command निम्न दिखाएगी: red cartoons में protein
haem भाग को yellow spacefill display में और 50% अणु का कटकर निकलना
4 सेकेंड्स में x axis पर 360º घूमना और सारे परमाणुओं को दोबारा प्राप्त करना
enter दबाएं और panel को देखें
अब हम उपरोक्त सभी steps को दोहराने के लिए loop command प्रयोग करते हैं
वही command प्राप्त करने के लिए अप arrow की दबाएं command के अंत में type करें loop 2
loop 2 पिछली script commands दिखाता है जो कि 2 second के बाद दोहराया जायेगा enter दबाएं
आप रचनात्मक हो सकते हैं और एनीमेशन के लिए कई और commands type कर सकते हैं
अब सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा
script commands जैसे move delay प्रयोग करके ethane और haemoglobin का animation बनाना
हमने loop और slab commands का भी प्रयोग किया है
capture command प्रयोग करके animations को gif file की तरह सेव करना
नियत कार्य में अपनी पसंद का एक अणु लें और move और delay commands प्रयोग करके animation बनाएं
animation बनाने के लिए bonds का display रंग और size बदलें
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के एम एच आर डी के nmeict द्वारा समर्थित है
इस mission पर अधिक जानकारी दर्शाये link पर उपलब्ध है